जहां पे चार खिड़कियां बनी हुई है जिनपे कुछ औरतें और आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहां सभी खिड़कियों पे --

खाने पीने का सामान मिलता हुआ नजर आ रहा है।

और थोड़ी बहुत घास भी उगी हुई नजर आ रही --

ये किसी बाजार की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है।

यहां पर बहुत सारी कारें अलग-अलग खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहां पीछे की वॉल पे कुछ अलग सी डिजाइन के प्रिंट के कुछ पेपर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे ब्राउन कलर की कुछ कुर्सियां टेबलें --

यहां पर एक पूल बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है और कुछ बड़े बड़े बहुत ही खूबसूरत पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे --

एक लकड़ी की स्टूल पड़ी है जिसपे एक सफेद कलर का गद्दा बिछा है और दो कुशन रखे हुए दिखाई दे रहे है।

जहां पे एक लड़की है जो खड़ी हुई नजर आ रही है।